वाइपर रखा है दुकान के ब ब बाहर में और एस.बी.आई. जो है वो उसपे लिखा हुआ है बाहर।

यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेलकम योर फैब्रिक्स यहाँ पे अ ब ब्लू कलर की ग्रिल भी लगी हुई है नीचे जो --